यहाँ पे एक फैक्ट्री का गोदाम दिखाया जा रहा है और एक फैक्ट्री में बिजली को ले गया ले जाया गया है और केले के पौधे हैं और होयते मे पलस्तरा नही है होयते मे पलस्तरा होना चाहिए था।

यहाँ पे दो काँसे के पिल्लर दिखाए गए हैं और ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में ये दिखाया गया है।

यहाँ पे एक कार को दिखाया गया है जो अभी सर्विस होने के लिए शोरूम पे आया है और इनका चार्ट भी खोल लिया गया है।

जो चलाने में बहोत ही मजा आता है।

जो मास्क सभी लगाए रखे है और यहाँ पे एक सेल्फी घीचे हुए है।